ये एक एम्बुलेंस है परफेक्ट नाम से है एम्बुलेंस और ये हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है।

आ रहा है फिसल कर बच्चा पीछे पेड़ लगा हुआ है हरे-भरे पेड़ लगे हैं और जाली लगी है बस यही सब मैदान में एक फिसल पट्टी लगी है बस।

खम्बा लगा हुआ है ट्रेन का और उधर ट्रैन जो स्टेशन के पा पहाड़ी है।

ये स्ट्रॉबेरी है बहोत सारी स्ट्रॉबेरीयां है लाल और थोड़े डल कलर में बहोत प्यारी स्ट्रॉबेरीयां बहोत सारी --